इसके किनारे मे कुछ ठेले लगे हैं कुछ दुकान लगे हुए हैं छोटे-छोटे --

सारे बच्चे ड्रॉइंग बना रहे हैं ।

यह एक हेल ब्रेड पब्लिक हाई स्कुल है।

जो प्लम्बरिंग पंप फिटिंग कर रहा है।

दो ट्रैक्टर है एक जे.सी.बी. है।

पीछे हमारा एक भारत का झंडा फेहरा रहा है।